बौन फील्ड में बहुत में बाउंड्री दिया हुआ है। एक कुत्ता है।

जिसमें एक लड़का येलो शर्ट पहन के टहल रहा है और कुछ--